भारी चारपाई भी है और बोरा बिछा पड़ा है।

और उसके बगल वाले खड़ा है बस उसका जो टोपी लगा रखा है वहां एक पेड़ दिख रही है।

और बाकी सारे रूमों पे तो पड़ा है सारा।

और बाकी सब स्कूल क्लास में बैठ गए हैं टेबल इतने गंदा है।

दस बीस माले हैं एक आदमी है आधे हाफ में--

और आगे जाके एक ट्रॉली है और सामने एक पीला कलर का बोर्ड लगा पड़ा है।

एक पहाड़ी है जहां से मै देख रहा हूं।

चॉकलेटी है एक व्हाइट है एक ब्लू है एक प्रिंट में है और यहां पर --

एक बिस्कुट का पैकेट है और एक बोर्ड बड़ा है।

ऊपर भी एक पानी की बोतल है ब्लू कलर की और ऊपर साइड डब्बे हैं मिठाई के--

और ब्लू कलर का उसका वो प पर्दा है अ उसको ब्लाइंड करके नाम लिखा पड़ा है।

यहां छत है छत से नीचे देखने में--